इस तस्वीर में एक वैली नजर आ रहा है।

दीवार पर कुछ कप के डेकोर और कॉफी लिखा हुआ हैं।

इस तस्वीर में एक क च्चे घर नजर आ रहा है।

दीवार बंबू का है और छत पत्ते का है।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

चारों तरफ हरियाली नजर आ रहा है।

ट्रक के बगल पर कुछ टूटे फूटे मकान भी नजर आ रहे हैं।

ब्लैक कलर का सिंगल सोफा है और कुशन छोटे कुशन है।